यहां बहुत सारे बम्बूस हैं।

ब्राउन कलर का छोटा सा पंखा है जिसके ऊपर लाल कलर का कलर किया गया है।

उसके दरवाजे पर ए दो नंबर लिखा है उसके ऊपर मिला होमस्टे एक बोर्ड है।

उस होटल पर लाल रंग के कुर्सी है।

और यह होटल बंबू से बना हुआ है।